आसमान दिखाई दे रहा है वो सब नीले कलर का वाइट बादल दिखाई दे रहे हैं।

सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है। पंखा दिखाई दे रहा है। बेड दिखाई दे रहे हैं। धूप दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट और ब्लू कलर की बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं एक रॉड दिखाई दे रही है।

कर्टेन्स दिखाई दे रहा है फैन दिखाई दे रहा है कुर्सी दिखाई दे रही हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं चार लड़कियाँ दे रही हैं।

मिर्ची कटर दिखाई दे रहा है रेड कलर का दीवार दिखाई दे रही है फुल के दिखाई दे रहे है क्रौप दिखाई दे रही है व्हाइट कलर के पॉलीथिन दिखाई दे रही है।

सूखी घास दिखाई दे रही है। कुछ सूखे पत्ते दिखाई दे रहें हैं। पत्थर दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे एक बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है एक बस दिखाई दे रही है रेड और व्हाइट कलर की।

खम्भा दिखाई दे रहा है। बिजली के तार दिखाई दे रहें हैं।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं एक दीवार दिखाई दे रही है जिसपे रेड कलर गुथा हुआ है बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है।

ब्रिज दिखाई दे रहा है लोहे के खम्भे दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की।

यहां पे एक दिवार दिखाई दे रही है जिसपे व्हाइट कलर पूता हुआ है चप्पलें दिखाई दे रही है।

पूरा मकान दिखाई दे रहें हैं। गाड़ी दिखाई दे रही है।

पर्पल वाइट और स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आसमान --

सड़क दिखाई दे रही है पानी का गड्ढा दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई --

लाइट्स दिखाई दे रहीं है कुछ अलमारी दिखाई दे रहीं हैं स्लेटी कलर की उनमें बहुत सारी किताबें दिखाई दे रहीं हैं।

साइकिल दिखाई दे रहे है गुलाबी फूल दिखाई दे रहे है बोहत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर का मकान दिखाई दे रहा है पोस्ट बर्ड्स दिखाई दे रहा है।

पुता हुआ दिखाई दे रहा है एक लड़का दिखाई दे रहा है पानी का केंट दिखाई दे रहा है व्हाइट और ग्रीन कलर का।

ऑरेंज येलो वाइट पिंक कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।

टी-शर्ट और हैट पहनी हुई दिखाई दे रही है स्लीपर दिखाई दे रही है।

पानी की टंकी दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की वाइट कलर की कार दिखाई दे रही --

होटल बीना मेंशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है शटर दिखाई दे रही है।